एटीएम नज़र आ रहा है। ये एटीएम के बाहर हमको बहोत सारे लोग लाइन लगा के खड़े दिखाए दे रहे हैं।